गार्डन में पीले और काले कलर का जूता लगा हुआ हैं।

और उसके किताब के जस्ट बगल में शायद बंदूके की दुकान है।

टू व्हीलर लेके भी एक इंसान भी खड़ा हुआ। ऑटो भी दिख रही --

जिम मे एक व्यक्ति है जो बॉडी का प्रदर्शन कर रहा है।

हरी कलर की रस्सी दिख रही है। घास दिख रहे हैं। कुछ फुले पड़े हुए हैं।

आइना के नीचे एक पट्टी जो लगी है वो नील कलर की है।